यहां पे पंखे लगे हुए हैं और यहां पे ब्राउन कलर के गेट लगे हुए हैं।

और यहां पे गमला रखा हुआ है मटके की तरह और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

टेडी रखे हुए हैं मिकी माउस रखे हैं डोरेमोन रखे हुए मोटू पतलू रखे हुए हाथी रखे हुए --

बीकानेर जेक्शन रेलवे स्टेशन है यहां पे एक लड़का है जो आसमानी कलर के शर्ट और ब्लू कलर के जींस पेहना हुआ है।

यहां सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है पानी का इलाका है जो ऊपर पुल लगा हुआ है टावर लगे हुए हैं।

यहां पे आसमानी कलर का एक बॉक्स रखा है जिसके ऊपर बहुत सारे हेलमेट रखे हुए हैं और पास में एक डस्टबिन रखा हुआ है ऑरेंज कलर का ड्रम की तरह --

का बोर्ड भी लगा हुआ है दुकाने बंद पड़ी है और यहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा ये पुरानी हवेली जैसी कुछ लग रही है।

ये एक डॉक्टर की टीम दिखाई गयी है जिसमें दो लेडिज भी दिखाई गया है चार जेंट्स दिखाया गया जिन्होंने मास्क लगा रखा है एक लेडीज ने चश्मा भी पहन रखा है।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

टी-शर्ट और काले कलर की जींस में है और एक फीके क्रीम कलर की पीली डिजाइन की टी-शर्ट पहन रखी है और काले कलर की टॉप पहन रखी है।

सुंदर लाइटों से सजाया गया है उसमें पीले कलर की छत से बनाई गई है यहां पे एक काले कपड़ों में आदमी को दिखाया गया जो चेयर पे बैठा है।

यह एक लाइब्रेरी है यहां पे कृपा शांति बनाए रखें यहां पे चौक पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है।

ये वाइट कलर की दीवार बनी हुई है और यहां पे डार्क ब्राउन कलर की मेज और --

यहां पे बहोत सारी भीड़ हो रखी है सबने मास्क लगा रखा है और व्हाइट कलर के --

यहां पे लाल चेयर पे एक आ आदमी बैठा है पीली टी-शर्ट मे एक आदमी खड़ा है इधर पीछे की साइड मे दूसरे रूम मे एक लड़की बैठी है जिसने --